यहां आप देख सकते हैं हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर का नाम है राधा कृष्ण।

यहां आप देख सकते हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जो की काफी बड़ा दिखाई दे रहा है और यहां से सीढ़ियां जो जा रही हैं आप खुद देख सकते हैं कितनी सारी जो की दूसरे --

यहां आप देख सकते हैं हमें इस एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है जिसका नाम है सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है ये।

यहां देखिए एक बहोत ही बड़ी शाखा है और खुद आप देख सकते हैं यहां पर एक बाहर फोर व्हीलर भी खड़ी है।

और एक अंकल बैठे है जिनका चेहरा हमें नहीं दिखाई दे रहा एक अंकल बैठे है वो भी उधर साइड फेस करके बैठे है और आप देख सकते है दो तीन जेंट्स गार्डन में है।

यहां देख लीजिए यहां पे काफी सारे आयुर्वेद --

शायरी लिखा गया है और यहां का टाइमिंग देख सकते है आप साढ़े दस बजे से लेके सात बजे तक का है और यहां पे बहोत सारे देखो संदेश की --

हम देख पा रहे है हमे एक बहोत ही बड़ा घर दिख रहा है और उसके बाहर आप देख सकते है यहां पे पुलिस आई हुई है और आस पास काफी सारे --

और इस फैक्ट्री में आप देख सकते खाली-खाली सा मैदान हैं और यहां पे आग जलती हुई हमें दिखाई दे रही है एक जेंट्स है जो की आग और देख रहे हैं।

हैं न आयुष आयुर्वेद प्रोडक्ट यहां पे मिलते हैं और जो ये सब हमें देख लीजिए फोटो में दिखाया गया है यहां पे काफी तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं।

ए एकदम खाली पड़ा है बिल्कुल सूखा पड़ा है ए और आसपास हमें गार्डन देखने को मिल रहा है और उसमें हरियाली और आप उसके पीछे हमें कुछ घर दिखाई --

यहां देख लीजिए ये गार्डन है गार्डन काफी बड़ा सा है और इसमें ज्यादा कुछ नीचे घास वास नहीं है सिंपल सी है और कुछ यहां पे --

देख सकते हैं हम पब्लिक आराम से लेटी हुई है ऊपर देख लीजिए पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है उसे गार्डन में धूप धूप काफी अच्छी--

यहां हमें एक मेडिकल मेडिकल स्टोर नजर आ रहा है और आप खुद देख सकते हैं और अलग अलग तरीह के यहां पर दवाइयां मिलती है।

यहां देख सकते हैं यहां पे खाली मैदान है उसमें कुछ काम चल रहा है कट्टो में यहां पे सामान भरा हुआ है।